मिट्टी कलर का दीवार बहुत सारे खिड़किया बने हुए हैं आसमान दिख रहा है।

झरना दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं टाइल्स लगा है।

यहाँ एक मंदिर नजर आ रहा है जोकि बहुत ही बड़ा है यहाँ बहुत लोग आ रहें हैं जा रहें हैं बगल में हीं बहुत सारे झालर लगे हैं जोकि ग्रीन कलर के रेड कलर के हैं सफेद के हैं।

खम्बा में जो दो गो नंबर लिखा हुआ है रेल की पटरियों में बहुत सारे गिट्टी बिछे हुए हैं। हरा-भरा घास है।